आप लोग देखिये पीछे एक बोर्ड भी लगा है घर भी है रंग का ठेला वाला आदमी ब्लू कलर का शर्ट पहना है और लाल रंग का गमछा लिया है।

योगा क्लास बहुत अच्छा है ए_सी लगा है लाइट अच्छी अच्छी लगा है पर्दे गमले सब है और देखिये फ्लोर भी अच्छा है जूते पहन के सब लोग योगा कर रह है।

हेलो गाइस जैसा की आप सब देख सकते है ये कोई पार्क है देखिये पार्क में ये एक बच्चा हाथी के ऊपर चढ़ा है नहीं नहीं हाथी नहीं ये --

ये भी एक हा बच्चे को पकड़ा है जो हठी को देख रहा है और ये देखिये ये गेंडा है गेंडे के आगे से पानी भी निकल रहा है।

हेलो गाइस जैसा की आप सभी देख सकते है ये एक बोहत अच्छे लड़के जो की --

ये दिखिए पैर में जूता नहीं है ये चप्पल है जीन्स तो लगा रखी है लेकिन चप्पल पहन जूता भी नहीं पहने --

ये देखिए बच्चों ये एक जिम का जो बोल सकते हैं मशीन है।

बस मुझे इतना पता है की ये जिम का ही है आप लोग को भी पता होगा की ये जिम का है लेकिन में जिम नहीं जाता।

लुगाई जैसा की आप देख सकते है ये एक पेट्रोल पम्प का फोटो है और यहाँ पे बहोत सारे भीग लगा हुआ है लगता है की --

आप लोग को भी देख के जाने का मन कर ही रहा होगा कोई बात नहीं चलेंगे साथ में चलेंगे सब कोई।

ये दिखिए दोस्तों ये एक गुल गार्डन है बहुत बड़ा गार्डन है यहाँ ग्रीन ग्रीन कितना अच्छा लग रहा है ।

कुछ खा ही रहा होगा ये देखिए सामने टेबल पे भी रखा है कुछ खाने वाला ही है उधर कुछ मिर्ची विरचि लग रहा है ।

बोहोत सरे पेड़ भी है बिछारा चलने के लिए रास्ता भी है देखिये इधर रस्ते पे कोई आ गया है ये चलने वाला रास्ता ही तो है कोई आएगा नहीं --

लोगो धुप भी लग रही है इसीलिए लोगो ने छाते लेके बेठे है और ये पता नि क्या है मस्जिद तो नही लग रहा है पता नही इन लोग का कुछ होगा--

ये देखो यहाँ पे बहोत सारे लोग जा भी रहे है कुछ आ भी रहे है पता नही ये क्या है मॉल तो नि लग रहा है मॉल में उपर भीड़ है टावर होता तो --

इसे वि टाइप का कुछ नहीं लगरा है हमको लग रहा है कोई वेटिंग हॉल वगेरा है ।

और यहां पर नो हॉर्न यानि हॉर्न अल्लोव नहीं है ।

ये देखिये दोस्तों ये एक सेल्फी लिए हैं जोकि पता नहीं पता नहीं कहाँ से सेल्फी लिए हैं बहुत ऊंचे से लिए हैं इतना पता चल रहा है उधर बाहर कुछ भी है।

ऊपर से फोन को उठाके मतलब थोड़ा अच्छा ही रहता है आप लोग को भी लेके टॉय करना चाहिए करो --

हेलो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये एक बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे पिलर दिख रहे हैं सामने सामने एकदम।

नाक की जगह मु के जगह इसमें दाढ़ी पे मास्क लगा रखा है छ कोई फ़ायदा नहीं है ।

हमारे तरफ घंटा घर बोलै जाता है अब पता नहीं आपली तरफ क्या बोलै जाता है ।

मुझे तो देख के लाइट बहोत अच्छा लग रहा है लाइट बहोत सारा अच्छा अच्छा लाइट --

हेलो दोस्तों जैसा की आप सब देख सकते है सामने एक दूकान है साइकिल की दूकान है वो भो छोटे छोटे बच्चो वाली गाव--

छोटे ग्रुप बच्चो वाली साइकिल मुझे अच्छी लगती है मै भी छोटा था तो में भी इस ऐसे साइकिल में घुमा करता था भाई मुझे तो बहत मजा अता था पता नहीं आपको मजा अता होगा या नहीं।

हेलो दोस्तों जैसा की आप सब देख सकते है ये एक स्टूडेंट टाइप का है केफे टाइप का है जैसे की एक टेबल लगा है।

उधर तो सोफा टाइप का लगा बोहोत अच्छा लग्जरियस लग रहा है यार --